इसमें आपको सब दिख रहा हैं और इसमें आप देख सकते हैं शटर है बाउंड्री है लाइन खींची हुई हैं और फिर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है।